यहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर है जहाँ पर सूर्य उदय हो रहा है।

यह पत्थरो से बना हुआ एक गुफा है जिसके अंदर एक शिवलिंग है।